पर गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है यहां पर गाड़ियां अलग अलग कलर की दिखाई दे रही हैं।